और यहीं पे कुछ ब्लैक ब्लैक कुछ रखा है शायद।

यहां पे काफी सारे आइटम रखे हुए जैसे कि तोस ब्रेड वगैरा टॉफी वगैरा--

अच्छा ग्राउंड के आसपास बाउंड्री है और एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

निर्मा टाफी और भी काफी सारे आइटम कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम वगैरह--

और फुटबॉल वगैरह और भी किट वगैरह टी-शर्ट्स वगैरह--

कॉफी रखी हुई हैं छोटे छोटे बॉल स्प्रे --

और सामने ही बड़ा सा एक मकान है।

काफी अलग-अलग प्रकार के झंडे लगाए गए हैं।

और कुछ एल_सी_डी टी_वी और परदे लगे हुए है।

और कार्तिके गणेश जी और बीच में मां दुर्गा रानी--

ये काफी खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं चारों तरफ से काफी सुंदर--

यहां पे आप देख सकते हैं काफी सुंदर बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है।

और कुछ पौधे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं पीछे--

सब्जियां रखी हुई है टब में और कुछ कैरेट वगैरा भी रखा है झूला रखा है।

घास लगी हुई है और एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।

ये भोपाल के बड़े तालाब का नजारा है।

ये एक ये बड़ा सा तालाब है जिसके आसपास देख सकते हैं बाउंड्री दी गई है और बाउंड्री के आसपास काफी बड़ा मकान नजर आ रहा है और काफी सारे --

पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है मकान के सामने एक कार खड़ी हुई है काफी सुंदर हरियाली है।

काफी सुंदर मंदिर बना है और बाहरी काफी मात्रा में--

आप देख सकते हैं ये क्रिकेट मैदान है जहां पे--

और एक डिब्बा रखा हुआ हैऔर काउंटर पर कैची पेन रखा हुआ है।

एक बड़ा सा तालाब है जिसके साइड में कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यह एक चर्च या--

और देपाल पे एक घड़ी लगी हुई है और कुछ उर्दू लैंग्वेज में बोर्ड लगे हुए हैं।

सामने एक साइकिल रखी हुई है और टेबल पे आइसक्रीम के डिस्पोजल रखे हुए हैं।

और सामने भी मिर्ची आलू प्याज वगैरह टमाटर वगैरह भी बेचे जा रहे हैं कुछ लोग खरीददारी कर रहे हैं।

ये एक बड़ा सा मकान है जिसमें आप देख सकते नीचे काफी सारी मात्रा में दुकान निकाली गई है।

जो कि किराणे की दुकान कोल्ड ड्रिंक की दुकान और भी काफी सारी दुकाने है।

यहां पे कुछ कुर्सियां वगैरह पड़ी हुई हैं और ऊपर काफी सारी लाइटिंग लगी हुई है।

और या साइड में दीवाल में आप देख सकते हैं फायर स्प्रे। --